उस पैण्त कासी की हुई है बाहर की तरफ साइकल है उसके साथी ही में नीले रंग का दरवाजा लोहै के --

ढोसा हरी चटनी के साथ नज़र आ रहा है जिसके साथ ही में केले का पता रखा हुआ है तथा पीछे की और दो--

कमीज पहने हुए बैठा है उसके साथ ही में एक खाली कुर्सी भी नज़र आ रही है गुवारो का रंग --

व्यक्ति की टांग नज़र आ रही है जिसके दोनों तरफ पटिया है तथा उसने सोक्सेस भी डाले हुई हैं।

भी लगे हुए है वृक्षों के साथ ही में कुछ और वृक्ष भी लगे हुए है जो काफी अच्छे प्रतित हो रहे है।

का दीवार नजर आ रही है तथा आगे की तरफ सफ़ेद रंग की दीवार नजर आ रही है जिसके साथ ही में दो कुर्सियाँ ओर लगी हुई है तथा एक भूरे --

एक दुकान साफ नज़र आ रही है जिसमे कुछ जेम्स के पैकेट कुछ बिस्किट तथा कुछ अन्य खाद्य सामग्री साफ नज़र आ रही है सामने की तरफ--

ऑटो तथा एक महिला मास्क पहने हुए फ़ोन पर बात करते हुए जा रही है।